यहाँ पर एक दरवाजा दिख रहा है एक छोटा सा फ्रिज दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक दीवार दिख रही है एक लोहे का गेट दिख रहा है।

बड़ी बड़ी पेड़ भी यहाँ पर दिख रही है यहाँ पे धुप और छाँव दोनों भी नजर आ रही है। .

फूलों से सजाया हुआ दिख रहा है और दो ओरते खड़े है होल में लाइट लगाया हुआ है और स्पीकर दिख रहे है।

कैरट नजर आ रहा है उस इस ठेले के बाजू में और एक ठेला है ठेला पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा --